ये बहोत ही बड़ा ऑफिस लग रहा है बहोत ही अच्छे लगते हैं। देखने मे--

दो तीन कुर्सियाँ है एक टेबुल है।